और बैठने की काफी अच्छी व्यवस्था है पेड़ भी लगे हुए हैं काफी साफ सुथरी जगह है।

जहां पे उनके सी_ए का बोर्ड भी लगा है उसमें--

यहां पे अच्छा लग रहा है लाइट्निंग वगैरा भी अच्छी है बहुत अच्छे से सजाया गया है इसको।

यह एक रोड के साइड की जगह है जो खाली पड़ी हुई है।

यह एक जो मुशलमान लोग होते हैं उनकी कोई जगह वग़ह होगी--

यह तो शहनाज कि कीट है जिसको हम यूज गर्ल्स फेशियल के लिए करते हैं गोल्ड एंड डायमंड किट वगैरा होती है।

एंड और भी कई इक्विपमेंट वगैरा रखी हुई है जिसका उपयोग हम--

अम्मी इस क्या है आर्मी ऑफिस या आर्मी हॉस्टल वगैरा की है।

यहां पे लड़कियां हैं काफी सुंदर पत्ते वत्ते लिए है अच्छा नृत्य कर रही हैं किसी स्टेप में बैठी हुई हैं वो।